ये एक जंगल टाइप का है जहा पर हरे कलर के व्रक्ष है नीले कलरके है जमीने पीली कलर की ब्लॅक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है।

ये एक बिल्डिंग है जो की सफ़ेद कलर की है पीले कलर की है ब्राउन कलर की है नीले कलर की है।

बल्ब है सफ़ेद कलर के। आइ लव यू लिखा हुआ है लाल कलर मे सफ़ेद कलर के ऊपर लिखा हुआ है।